के ऊपर लाइस गिरी है बच्चे की तस्वीरे है नर्स है डॉक्टर है मशीने है।

मंदिर है पोछा दिखाई दे रहा है मटका है फैन है पैर पुछनी है ग्रीन कलर की फ़र्श है वाइट --